यहां मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर में मुझे मिट्टी की मूर्तियां दिखाई दे रहीं हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा हैं।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

तस्वीर में मुझे कुछ दुकान दी--

यहाँ मुझे बहोत सारे पेड़ दि--

इस तस्वीर में मुझे एक पार्किंग यार्ड दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे--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

है बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।